इस तस्वीर में मुस्लिमो के मस्जिद को दिखाया गया है | जहाँ मुस्लिम अपनी अपनी तरह की पूजा करते हैं।

जो बहुत ही सारे बलून से सजा हुआ है तथा कई सारी सरियाँ बिखरी हुई हैं कई सारे कस्टमर उसे लेने के लिए खरीदने के लिए खड़े हैं |

इस तस्वीर में लड़कियों द्वारा पहनने वाली कुर्ती को दिखाया गया है जो कि एक पुतले को पहनाया गया है और कई सारे बच्चों के पहनने वाले फ्रॉक तथा साड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में ए सलोन में एक व्यक्ति द्वारा एक महिला का हेयर कटिंग हो रहा है।

साइन को दिखाया गया है और कई सारे बच्चे है जो क्रिसमिस फेस्टिवल को सेलीब्रेट कर रहे है।

इस तस्वीर में रास्ते पर चल रहे कई सारी गाड़ीयो को दिखाया गया हैं और कुछ व्यक्ति आते जाते दिखाई दे रहे हैं जिस और रास्ते के किनारे पे कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में जिम में तीन व्यक्तियों द्वारा आईने में सेल्फ़ी लिया जा रहा है।